यह पिला रंग हरा रंग गुलाबी रंग काला रंग नारंग --

नारंगी रंग लाल रंग और उसी के दाएं और एक और का कांच है।

नीचे मे भी फिनायल पड़ी हैं जिनका रंग हरा है और एक का रंग सफेद है।

अह और यहां पे पीछे आलू प्याज भी है।

जे एक अंकल सब्जी खरीदने और एक अंकल सब्जी बेच रहे हैं।

और ऊपर काले रंग के बादल छाए हुए--

पीछे बहुत सारे ठेले लगे हुए हैं और यहां पे एक लाल रंग की वैन भी है।

इसमें एक लिबर्टी एरिया है जहां एक काले रंग का ड्रॉवर है काले रंग की अलमारी है।

और अंदर एक ऑफिस है जहां घड़ी है एक पोस्टर भी है।

और यहा पे एक और दरवाजा है और यहा पे नीचे टाइल्स का रंग सफेद है।

इसमें कई सारे पौधे और पौधों के पीछे एक बड़ा सा घर --

और यहां पे एक पाइप है नीले रंग की और यहां पे कुछ पौधे गिरे हुए भी है।

इसी के दाईं और दी लेडी विल्सन म्यूजियम लिखा है।

और यहां पे कई सारे पेड़ भी हैं दो नीले कचरे के डिब्बे भी हैं और हरी हरी घास भी है।

और यहां पे एक तराजू के बाजू में दो डब्बे भी है।

पेड़ दिख रहा है और उसे पर हरे रंग के पर्दे भी लगे हुए हैं यहां पर सफेद रंग के टेबल भी है।

एक अंकल खड़े हुए हैं उसी के इस तरफ चार अंकल खड़े हुए हैं और यहां पे साइड में एक दीदी है।

इसमें एक शहर है जहां पे बहोत सारे बिल्डिंग है।

इसमें एक कटलरी है जहां पर तरह तरह की चूड़ियां रखी हुई है कपड़े रखें--

और नीचे जमीन का रंग भूरा है और यहां पे एक सफेद रंग की थैली भी है।

उसी के पीछे एक बड़ा सा ग्राउंड है जहां पे झाड़ लगे हुए--

और इस तरफ दो बाइके खड़ी है और एक स्कूटी खड़ी है।

और इसी के पीछे एकझाड़ है और यहां पे एक बैग रखा हुआ है।

और यहां पे पतले होने की पट्टा भी है और यहां पे पेड --

इसमें एक नदी है जहां पे नीले रंग की बोट खड़ी हुई है।

और उसी के बाई ओर रेत है और उसके दाएं ओर बहोत सारे झाड़--

ऊपर एक आसमान और आसमान के अंदर एक सूरज है जिसकी परछाई पानी में दिख रही--

टेबल का रंग नीला है और अंदर डेकोरेशन भी गुब्बारों से है आगे तारे भी लगे--

और यहां पे बैगनी नहीं रंग का सूटकेस है नीले रंग का।

अंदर एक पानी का टैंकर भी दिया हुआ है और यहां पे वॉशरूम लिया --

और उसीके बगल में एक बहोत बड़ी बिल्डिंग भी हैं।

यहां पे पौधे भी है स्कूल का रंग सफेद है वहां पे झूला लगा हुआ है यहां पे --

काले रंग का गमला भी रखा हुआ है और यहां पे एक --

मे एक एनुअल फंक्शन हो रहा है जहां पे बहोत सारे लोग हैं कुछ लोग बैठे हैं।

इसमें एक शॉप है जहां पे ब्रेड है बिस्किट्स है।

दूध है जूसेस है और ऊपर में एक मंदिर है और उसी के बाजू में --

एक नोटिस बोर्ड भी है और यहां पे कांच है जिसके अंदर बहोत सारे चॉकलेट्स रखे है किटकैट --

और उधर ही दो कुर्सियां और है और उसी के बगल में एक और होटल है और उसी के बाय ओर --

किराने की दुकान है जिसमें ठंडे और ब्रेड रखे हुए है और बाहर ही दो स्कूटी और है।

हुआ है और मन्दिर के आजू बाजू पानी है और उसी के जस्ट बगल मे एक --

और यहां पीछे यहां बड़े बड़े बिल्डिंग है।

यहां पे बहोत हरियाली है हरे हरे रंग के पेड़ है हरे हरे रंग के पौधे हैं।

छत पे कुछ आदमियां खड़े हैं कुछ औरतें खड़ी हैं और पीछे--

इसमें एक फुटबॉल ग्राउंड है और यहां पे फुटबॉल के दो बड़े नेट है और एक छोटा नेट --

दाई ओर नारियल का पेड़ है और ऊपर नीला आसमान हैं।

उसी के पीछे पीले रंग का टेंट लगा हुआ है उसी के बाजू में ए--

दुकान भी है और इसी के दाएं ओर एक ठेला लगा हुआ है और--

एक मसालो की दुकान जहां तरह तरह के मसले रख --

गुलाबी रंग के फूल भी है और उसी के--